यख मा जी एक आदमी छा यख मा जी जू छा यीण अपणा माछु की दुकान छा लगाईं यख मा जी कई सारा छोटा बड़ा माछा छन रख्यां।

यख मा जी कई सारा आदमी छन यख मा जी एक तराजू भी छ रख्युं।

यख मा जी कई सारा लोग छन यख मा जी कुछ बच्चा कुछ जनानी अर कुछ मर्द छन यख मा जी घास छ फेक्युँ।

यख मा जी एक लाल रंग की कुर्सी यख पिछाड़ी मा जी एक टेंट लग्युं रंग बिरंगु टेंटा वैका एंच एक पोस्टर करा लग्युं सामणी मा जी एक इमारत कर भी दिखेण लगीं यखम टाट पट्टी छ भ्वां पर दिखेण लगीं।

यख मा जी कई सारा लोग छन यख मा जी कई सारी स्कूटी और बाइक छन लगी यखम एक पौधा उग्युं यख मा जी हर्युं भर्युं मैदान करा हर्युं भर्युं घासा ढुङ्गा यख फणा कट्टा पिछाड़ी मा जी हर्युं भर्युं डालो दिखेणु बिजली कु तारा।

यख मां जी कई सारी जनानि छन युं जनानियों रंग - बिरंगी साड़ी छन पेहनीं यून अपणा माथा पर टिक्का कर छन लगायां।

यख मां जी पिछाड़ी म एक नदी कर दिखेण लगीं यखम एक छोटु सौकु बुचकु कर छ बणायुं यखमा जी छोटा-छोटा पत्ता छन दिखेणा हर्युं-भर्युं घास दिखेण लग्युं यख मा जी खट्टू खाडू उगयूं यखमां जी अमेडू छ उगयूं।

यख मा जी एक जिम छा जिम तें हिंदी मा व्यामशाला बोल्दान यख मा जी पर्दा छ लग्युं दीवाल मा जी नीलू अर नारंगी रंग होयुं यख मा जी पंखा भी छ लग्युं पिछड़ी मा जी एक और लड़का छा।